यहां पर बहुत सारी लाइटे जल रही है।

और बहुत सारे व्यक्ति है जोकि मास्क लगाए हुए हैं।

यह तस्वीर संगीत इलेक्ट्रॉनिक्स की है।

एक लड़की ऑरेंज कलर की साड़ी पहने हुए है।

बिल्डिंग में बहुत सारी एशिया लगी हुई हैं।

एक रस्सी है और कुछ टुकड़े भी पड़े हुए हैं।

यह तस्वीर मिठाई की दुकान लग रही है।

हाथ में कंगन पहने हुए हैं तथा कलावा भी बंधा हुआ है।

पीछे दो कुर्सियां रखी हुई हैं।

इसमें एक व्यक्ति बाहर की ओर आता दिख रहा है।

मेज पर टिशू पेपर रखे हुए हैं।

जिसमें बहुत सारे महान पुरुषों की तस्वीर भी लगी हुई है।

एक बच्चा घास पे बैठा हुआ है।

इस तस्वीर में एक महिला और एक पुरुष बैग को पकड़े हुए आ रहा है।

नीचे से ऊपर जाने वाली सीढ़ीयों के पास दो छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं।

दो आदमियों के पास बॉटल रखी हुई हैं।

भवन के आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ भी हैं।

आर_एस बुक सेंटर जो की बंद है।

मैदान के चारो तरफ दीवाल बनी हुई है।

यह तस्वीर चारबाग रेलवे स्टेशन की है।

कुछ लोग आते हुए भी दिख रहे हैं।

और एक बिजली का भी खंभा है जिसमें तार है।